libreoffice base पर इस spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे कि कैसे
एक subform बनाएँ
इसके लिए अपने परिचित उदाहरण library database के साथ शुरुआत करते हैं
और निम्न उदाहरणों को समझेंगे:
कैसे how library के सभी सदस्यों को सूचीबद्ध कर सकते हैं
और प्रत्येक सदस्य के लिए कैसे हम केवल उन पुस्तकों को देख सकते हैं जो उस सदस्य ने वापस नहीं की हैं
एक तरीका है कि एक form बनाएँ जो library के सभी सदस्यों को सूचीबद्ध करे
और फिर उसके नीचे एक subform बनाइए जो उन पुस्तकों को सूचीबद्ध करे जो सदस्य द्वारा वापस नहीं की गयी हैं
एक बार जब हम यह form बना लेंगे हम form में नवीनीकरण करने के लिए सक्षम हो जाएँगे
उदाहरणस्वरुप जब एक सदस्य एक पुस्तक वापस करता है हम इस सूचना का नवीनीकरण कर सकते हैं
और यहाँ form का सैम्पल screenshot है जिसे हम बनाएँगे
ध्यान दीजिये यह साथ ही नीचे एक subform दर्शा रहा है
अपनी library database खोलते हैं
अपने पिछले tutorials में हमने history of books issued to members query बनाई थी
अब हम इस query और members table को अपना now form बनाने के लिए बुनियाद की तरह इस्तेमाल करेंगे
पहले इस query को query name पर दायाँ click करके copy करते हैं और paste पर click करते हैं
query name के लिए पॉपअप window में एक नया name type करते हैं: books not returned
books not returned query को edit mode में खोलते हैं
query design window में चलिए एक मापदंड जोड़ते हैं केवल उन पुस्तकों को दर्शाने के लिए जो checked इन नहीं हैं
इसके लिए checkedin के अंदर criterion column में equals 0 type करते हैं
और enter दबाइए
अब query सेव करते हैं और window बंद करते हैं
मुख्य base window में चलिए बाएँ panel पर forms icon पर click करते हैं
और फिर use wizard to create form विकल्प पर click करें
अब हम परिचित form wizard देखते हैं
अपने form की बायीं तरफ 8 steps को शुरू से अंत तक देखते हैं
पहले step 1 में field selection चलिए table: members चुनते हैं
फिर सारी fields को दायीं तरफ खिसका देते हैं
और next button पर click करते हैं
हम step 2 setup a subform पर हैं
अतः यहाँ add subform चेकबॉक्स को check करते हैं
और विकल्प: subform based on manual selection of fields पर click करिये
चलिए step 3 add subform fields पर जाते हैं
यहाँ हम अपनी query को लायेंगे जिसे हमने कुछ समय पहले बनाया था
अतः tables या queries ड्रॉपडाउन में से query: books not returned चुनते हैं
और हम उपलब्ध सूची में से चुनित fields को दायीं तरफ खिसका देंगे जैसा कि screen पर दिख रहा है
next पर click करिये
step 4 get joined fields
यहाँ हम ऊपर के दो ड्रॉपडाउनों में से memberid field चुनेंगे क्योंकि केवल यही सम्बन्धित field है
और next button पर click करिये
step 5 arrange controls
यहाँ हम दोनों के लिए form और subform के लिए तीसरा विकल्प datasheet चुनेंगे
और next button पर click करिये
step 6 set data entry
यहाँ हम विकल्पों को वैसे ही छोड़ देंगे जैसे वो हैं और next पर click करिये
step 7 apply styles
चलिए form background पृष्ठभूमि के लिए grey चुनते हैं
और आखिरी step में जाते हैं
step 8 set name
यहाँ अपने form को एक विवरणात्मक name देते हैं: members who need to return books
और modify form विकल्प पर click करते हैं क्योंकि हम कुछ और बदलाव करेंगे
अब finish button पर click करते हैं
form design window में ध्यान दीजिये कि यहाँ दो सारणीबद्ध क्षेत्र हैं
जो ऊपर है उसे form बोलते हैं और जो नीचे है उसे subform बोलते हैं
add form के ऊपर एक label जोड़ते हैं
हम form controls toolbar में label icon पर click करेंगे और उसको form पर बनाएँगे
label पर double क्लिक करने से यह उसकी properties को ऊपर लाएगा
यहाँ हम label के सामने members of the library type करेंगे
और font स्टाइल को arial में बदलेंगे bold और size 12
उसी प्रकार से subform के ऊपर एक दूसरा label जोड़ते हैं जैसा कि screen पर दिख रहा है
और इसको बोलिए list of books to be returned by the member
अब फॉर्म की लम्बाई छोटी करते हैं जैसा कि screen पर दिखाया गया है
और फिर form में name field की लम्बाई बढ़ाते हैं
उसी प्रकार से subform में book title field की लम्बाई बढ़ाते हैं
fonts को यहाँ arial bold और size 8 में बदलते हैं
और form के लिए पृष्ठभूमि रंग background color को सफेद में और subform के लिए blue 8 में बदलिए
आगे इस पर दायाँ क्लिक करके memberid column को छिपा देते हैं और hide column विकल्प चुनते हैं
ठीक है हमने कर लिया अतः form डिजाइन so करते हैं और इसको जाँचते हैं
मुख्य base window में members who need to return books form पर double क्लिक करके खोलते हैं
यहाँ form है
अप या down arrow की का इस्तेमाल करके members से browse करें
या केवल विविध member names पर क्लिक करके
ध्यान दीजिये नीचे subform refreshes होता है और पुस्तकों का वापस होना दर्शाता है
subform में कोई भी record चुनें
और actual return date field में 12/7/11 type करें और checkedin feeld को check करें
और enter दबाइए
अब form navigation toolbar में refresh icon पर क्लिक करके form refresh करते हैं
ध्यान दीजिये कि record जो हमने अभी बदला था अब यहाँ सूचीबद्ध नहीं है
जिसका मतलब है कि पुस्तक वापस हो गयी है या checked इन है
अतः यहाँ हमारा form subform के साथ है
इसी के साथ हम libreoffice base पर सबफॉर्म्स के इस tutorial की समाप्ति की ओर आ गये हैं
संक्षिप्त में हमने सीखा कि कैसे:
एक subform बनाएँ